नदी के पास मुझे कुछ सीढ़ियां पत्थर की नज़र आ रही हैं जहां पे बहुत सारे बतखें चल रही हैं और कुछ बगुले भी चल रहे हैं।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

पेट्रोल पंप के चारों तरफ मुझे हरा भरा घास और बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।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

रिसेप्शन के पीछे मुझे एक एल_ई_डी भी नजर आ रही है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारी बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं।

यहां पे मुझे एक शॉप और एक बॉटल दिखाई दे रही है।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

और कॉफी शॉप में मुझे बहुत सारी कॉफीस के पैकेट नजर आ रहे हैं।

यह घर में दो मंजिला है नीचे से वो ग्रीन कलर का है और ऊपर से शीशे का बना हुआ है।

बिल्डिंग के बाहर मुझे सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पे मुझे एक गार्डन नजर आ रहा है जहां पे रंग बिरंगे फूल और ये झाड़ियां लगी हुई है।

इस तस्वीर में मुझे एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहां पर बहोत बड़ा बैनर लगा हुआ है जो अन्वी चंडीगढ़ का--